और एक घर दिख रहा है जिसे सफेद रंग किया गया है।

छत के उपर पंखे लगे दिख रहे हैं।

मुझे सिटी सेंटर सैलून का बोर्ड लगा दिख रहा है।

और वहां पर कुछ गमले पड़े हुए दिख रहे हैं।

और वहां पर बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी दिख रही हैं।

और वहां पर बहुत सुंदर फूल भी दिख रहे हैं।